अम गुफा है पिल्लर बहुत बड़े बड़े हैं पेड़ है और छोटे छोटे पोधे हैं घास है आसमान है और एक आदमी भी है और पेड़ है घास है।

फूटबॉल ग्राउंड है दो आदमी हैं बड़े बड़े खंबे लगे लाइट वाले इधर रोड के उस तरफ भी रोड है पीछे वो पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं दुकाने हैं शटर लगे हैं और ये खंबे लगे --